दास्तान रेस्टोरेंट सेक्टर सेवन का सीन है।

काफी अच्छा लकड़ी के अलमीरा दिखाई दे रही है।

कईयों ने सफेद वस्त्र पहने हैं कईयों ने रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए हैं।

ज्युसेस के पैकेट छोटे छोटे बहोत अच्छे लग रहें हैं।

ये है बॉश कंपनी का स्टोर है बॉश कंपनी की वॉशिंग मशीन्स रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आते हैं।

नेट्स लगे हुए हैं बच्चे खेल भी रहे हैं।